हरे हरे पेड़ है काले कलर की पट्टी बनी है उसपे चार पांच बॉक्स रखे है हरे हरे पेड़ है खिड़की --